यहाँ पर एक होटल दिखाई दे --

धूप भी दिख रही है।

है इसमें सीढ़ियां--

बाहर गेट लगा हुआ है ।

यहां पर एक तड़का लाले --

चित्र में रोड दिखाई--

मिष्ठान मंडल की--